नीचे देखिये सब नायका प्लाई का यूज़ किया गया है |

पूरा धूप पड़ा है। इसमें छोटे-छोटे वृक्ष दिखाए दे रहे हैं।

बगल में एक बाइक खड़ी है। बाइक है।

ने फ़ोन से सेल्फी ले रहे है इनके पीछे एक लाइट लगी हुई है ये जिम का सीन है नीचे दोनों साइड में बहुत सारी जिम के रखा हुआ है नीचे ब्लैक और रेड कलर के रखे हुए हैं इनके पीछे एक आदमी जिम कर रहा है जो बाइसेप्स को उठा --

एक पे एक सजाके स्टील का बर्तन रखा गया है। स्टील के बर्तन में दोनों साइड से होल है। इधर से डालेंगे तो उदर से निकल जाएगा। एक से एक सजा कर के बोहत सारा रखा है बर्तन।

इसमें अभी इसका कलर जो है सिल्वर कलर है ये स्टील का बना हुआ है और कुछ लोहे का बना हुआ है उसके बगल में कुछ लोहे का प्लेट्स वगेरा रखे है पाइप कटिंग करके।